और लाल सफेद और राम भगवान के हाथ मे तीर धनुष है और ये तीर धनुष पकड़े हुए लाल कलर का धोती पहने हुए है इसके नीचे हर कलर का चादर--

यहाँ घर है बहुत प्रकार के घर है यहाँ पर पेड़ पौधे है एक टावर है। ]

यहाँ एक पहाड़ है पहाड़ मे भूरापन छाया हुआ है और उसके बगल मे फिर एक पहाड़ है पहाड़ के सामने समतल जमीन है और उसपर बहुत सारे पेड़ पौधे है यह घूमने का स्थान बहुत ही अच्छा है।

यहाँ पर बहुत सारे फूल है एक फूल पर सफेद कलर और उसके बीच- बीच पर रेड कलर के फूल दिए हुए है उसके बगल पर एक लाल कलर का फूल है।

और इसपर रेड कलर सफेद कलर और भूरा कलर का पैंट किया हुआ है छोटे- छोटे तीन खिड़कियें है।